इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि एक डैम है और डैम के बीचोंबीच एक रास्ता है जो कि दूसरे तरफ जाता है और हम वहाँ पर देख सकते हैं पा चार लड़के हैं।

और अ अंदर की तरफ आदमी खड़े हैं और येलो कलर एंट्रेंस पे येलो कलर की शर्ट पहने हुए दो आदमी खड़े रहे।

और वहाँ पर कुछ लिखा है --